पंडाल है ये पंडाल घर जैसा दिखाई दे रहा है इस पंडाल में बहुत सी सजावट है इस पंडाल के बाहर अ कुर्सी लगल है यह कुर्सी लाइन बाई लाइन लगी है इस कुर्सी पर आदमी बेठे हुए हैं यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है।

यह घर के सामने सीढ़ी है सीढ़ी के नीचे बहुत सी लेडीज खड़ी है यह एक ही कलर की साड़ी पहनी है ।